और पीछे सजावट हो रही है।

साइड में एक खंबा खड़ा हुआ है बिजली की लाइन जा रही है।

कुछ आदमी जा रहे हैं बैठने के लिए कुछ उतर के आ रहे हैं।

एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है।

एक बिल्डिंग है उसपे सफेद रंग हो रहा है और एक पे काला रंग हो रहा है।

यह एक बहोत बड़ा महल है।

चुन्नियों के साथ डेकोरेशन है।

एक आदमी बैठा हुआ है पत्थर पे।

साइड में नीचे चटाई बिछ रही है हो रहा है साइड में शीशे लगे हुए हैं।

पीछे कुछ किताब रखी हुई हैं बोतल रखी हुई है इनवर्टर बैटरा रखा हुआ है।

पास में पीछे सेल रखे हुए हैं।

पीछे शीशे लगे हुए हैं गेटों में।

बीच में रोड के पीली पीली सी ग्रिल लगी हुई है।

बहोत सारे पत्थर पड़े हुए हैं।

एक आदमी काम कर रहा है और कुछ ईंटे पड़ी हुई हैं।

एक लेडिस खड़ी हुई है पीले कपड़ों में।

दिवाल में सफेद रंग हो रहा है।

छोटे छोटे तारों के टुकड़े पड़े हुए हैं।

बच्चा अपनी कटिंग कर रहा है।

साइड में दो कुर्सी रखी हुई है।

और साइड में हरे हरे से कुछ और फूल रखे हुए हैं।